पर्दा लगा है और ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है एवं पंडाल के अंदर बहोत सारी--

सफेद कलर की है और सामने एक बड़ा खंभा लगा हुआ है जिसके साइड में एक लाल कलर का बॉक्स बना हुआ है और नि --

जो सफेद कलर की हैं और एक बीच में काले कलर की दिख रही है उसके सामने--

रखा हुआ है और दो कप दिखाई दे रहे है और इसके सामने की दिवाल सफेद कलर की है और साइड में पर्दे लगे हुए है जो ग्रे --

की है ऊपर नीला आसमान दिख रहा है और बहोत सारे पेड़े हैं जो हरे और कहीं कहीं पीले दिख रहे हैं और एक चबूतरा बना हु--

हमें एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमे नीचे हरी हरी घास लगी हुई है और सामने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं जो क्रीम कलर के हैं और--

दो टेबल बनी हुई हैं जो सफेद कलर की हैं और अंदर से लाल कलर की है और नीचे हरी हरी घा--

पर्दे रहे हैं और कुछ पीले कलर की बोरी रखी हुई हैं और सामने एक वॉकर डली हुई है और बहुत सारी तगाड़ी हैं जिसमें--

सामने बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमें निचे हरी हरी घास लगी हुई है और सामने दो महिलाए दे--

कपड़े पहने हुए हैं जो इनमे लाल कलर का पट्टी बनी हुई है और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए है और नी --

बहोत से आदमियों की मुंडी दिखाई दे रही है ऊपर पंडाल का कलर पीला है जिसमें कलर --

सामने एक दुकान दिख रही है जिसमें अंदर कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर बाहर सफेद लाइट लगी हुई है ऊपर पोस्टर लगा है जिसमें--